दूसरे काउंटर पर एक औरत बैठी है।

यह टॉय हाउस का सामने बोर्ड लगा है।

सामने एक कुर्सी रखी दिखाई दे रही है।

एक डक का डस्टबिन बना दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारी गोभी लगी हुई हैं।

बहुत सारी पीछे वॉल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं।

सामने टीन के घर हैं।

बहार वॉल बहोत सारे पोस्टर्स लगी है।

बिजली के डिब्बे बने हुए हैं।

आती जाती भी दिखाई दे रही हैं।

ब्रिज के नीचे एक सफेद कलर की बस भी खड़ी दिखाई दे रही है।

लाइन से चौकोर आकार की खिड़कियां बनी हुई हैं।

बड़े बड़े ग्रीन कलर के पेड़ हैं।

बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन कलर के।

लोहे के खंभे लगे हैं लाइन से।

सामने बहुत सारी मेज कुर्सियां हैं कुर्सी के ऊपर पिल्लू कवर भी रखा है।

सामने एक एंटीना भी लगा है।

टेबल के ऊपर कैंची कॉपी पेपर ग्लू रखा दिखाई दे रहा है।

लाइन से छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

जमीनों पर फूल ल पड़े हुए हैं।

इसके जमीनों पर टाइल्स बिछा हुआ है।

बगल में लोहे की जालीदार सीढ़ियां बनी हुई है।

ऊपर की तरफ बहोत सारी लाइटे जगमगाती दिखाई दे रही है।

इसमें एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन लिखा हुआ है।

एक कुर्सी रखी हुई है।

पीछे की तरफ लकड़ी की--

काउंटर रखा दिखाई दे रहा है।

पानी की बोतले भी राखी दिखाई दे रही हैं।

सामने दो छोटी लड़कियां है।

हाथ में लैंप लिया हुआ है।